दोनो जने कोट पेहने हुए हैं और सजावट बहोत सुंदर किया हुआ है।

और नीचे फ़र्श बना हुआ है सभी लोग अपना-अपना कारपेट बिछाए हुए है और यहाँ --

बगल वाला आदमी फोटो खिचवा रहा है बहोत सुंदर दुकान है।

हो सकता है नियमों से बाहर निकलते हुवे दिखाया गया हो और एक बोर्ड लेग लगा हुआ है उसपे कुछ लिखा हुवा है।

यह कोई कॉलेज या अपार्टमेंट हो सकता है। दिखने में अच्छा लग रहा है बारिश हुआ है बारिश का पानी --

यह ट्रैक पे दिख रहा है | बहुत सारे लोग बैठ के इंतजार कर रहे है गाड़ी का | अच्छा लग रहा है |